अंदर एक आदमी है हैं रॉड हैं दरवाजे हैं डस्टबिन है।

यह एक सिनेमा टिकट हाउस है दो आदमी खड़े हैं। बुक माय शो लिखा है ए_सी लगी है।

टिकट का रेट लिखा है। गोल्ड दो सौ बीस सिल्वर एक सौ अस्सी स्टील सौ फर्स्ट सत्तर रेगुलर --

चाय बना चाय की दुकान है सिलेंडर है नीला डब्बा है।

बोरी पकड़े हैं ऑटो पे अतुल लिखा है।

बल्ब लगा है बहुत सारी साड़ियां हैं लाल पीली हरी नीली ब्लैक ।

बोर्ड पे लिखा है टिफिन सर्विस ।

यहां आय प्रमाण पत्र लिखा है जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र पैन कार्ड घड़ी है घड़ी में--

यह एक एस_बी_आई बैंक है यहां बहोत सारे आदमी है एक आदमी झोला लेकर जा रहा है एक आद--

रेड कलर की टोपी पहने बाग टांगे है एस_बी_आई का बोर्ड है एंटीना --

रेड कलर की बिल्डिंग बनी है शटर लगा है रोड है हरे पौधे हैं पानी की टंकी है दो दरवाजे हैं।

पेड़ हैं गमले हैं। गमले येलो कलर के रेड कलर के हैं।

का काम हुआ है शीशा लगा है।

स्पीकर पिलर व्हाइट चादर पर्दे--

फव्वारें हैं लाइट हैं आदमी बैठे रेलिंग है।

गमला है चैनल लगे हैं बाहर घास है पेड़ हैं।

लाइट लगी है कुर्सी है।

क्रिसमस ट्री का पेड़ है सेंटा क्लास के कपड़े हैं।

फैन लगे हैं लाइटें हैं एक पुतला है वो साड़ी पहने है।

क्रीम एंड मोर लिखा है आइसक्रीम एंड लव लिखा है लाइटें लगी हैं ऊपर बल्ब आगे स्कूटी है।

संदूक पर डिजाइन बने हैं।

ऑटो रिक्शा है बैटरी रिक्शा है आदमी साइकिल से जा रहा है एक आदमी के मुंह में मास्क लगा है।

पेड़ पौधे है तालाब है तालाब में काई लगी है।

आसमान है पानी की टंकी है रेड कलर का--

यह एक पेट्रोल टंकी है डिवाइडर हैं खंभे हैं बहोत सारे घर हैं।

रिलायंस कंपनी की है टंकी।

पानी की टंकी छत पे रखी है पेड़ पौधे हैं खंबे हैं।

ये एक मछली की दुकान है तराजू है गडसा है बाल्टी है बाल्टी में गंदा पानी है।

पट्टे रखे हैं लकड़ी है मछली है हेलमेट है एक आदमी उसके चप्पल व्हाइट कुर्ता है बहोत सारी मछली हैं छोटी बड़ी--

येसे शरीन का काम हुआ है शटर लगे हुए हैं दरवाजा है।

सीलिंग है पी_ओ_पी है फैन लगे हैं मर्करी है।